छतों पर पंखे लगे हुए हैं खंभों पर नीली लाइटें लगी हुई हैं।

गणेश जी का एक बड़ा सा फोटो भी लगा हुआ है।

टेबल पर गुलाबी और हरे कागज रखे हुए हैं।

यह फोटो किसी दुकान की है जिसके अंदर बैग अ टंगे हुए हैं।